इस इमेज में टेबल पर खाना सजाया हुआ है।

इसमें बाहर एक कार खड़ी हुई है इसके पास एक --

यह इमेज एक कार गेरेज की है।

इस इमेज में बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बाहर बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

यह इमेज एक होटल की है इसमें काउंटर पर शो प्लांट्स रखा हुआ है।

स्टील की बाल्टी भी दिखाई दे रही है पास ही एक घर दिखाई दे रा है।

टेबल पर टिशू पेपर और कुछ सामान रखा हुआ है।

पीछे बहोत सारी बॉटल्स स्कैनर् और कप दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बैलून से डेकोरेशन हो रखा है एक व्यक्ति डरम बजा रहा है।

एक व्यक्ति जा रहा है बाहर कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

सीढ़ियों पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है बहुत सारे बोर्ड और पोस्टर भी नज़र आ रहे है।

एक बड़े से झूले पर बहोत सारे लोग झूलते नजर आ रहे हैं।